यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं| और ये नीचे लाइन बनी हुई है और इसके अंदर कूदना है एक छोड़ कर एक पे कूदना है जंपिंग मारना है ।

ये किसी बड़े दुकान या मॉल की फोटो दिख लग है काफी तगड़ा फोटो है| और यहां पर ढेर सारे चावल मिल रहे हैं राइस और ये यहां पर किसी राइस के बोरे की कलर ब्लू है|